इ मोटर साइकिल के शोरूम छे यमाहा कंपनी के जेमें मतलब तरह-तरह के मोटर साइकिल छे सब साइकिल में डिश ब्रेक लागेल छे हरा कलर के साइकिल पीला कलर के लाल कलर के।

उजरा कलर से हेय हरका कलर से ललका कलर से पेंट भेल छै एक गोरे बस के टायर लग बइठल छै शीशा लागल छै बस मे बस मतलब अखन बंद छै चल नए रहल छै खड़ा भेल छै नीचा में।